यहाँ पर एक मोर बैठी हुई है लकड़ी ऊपर और यहाँ पर कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है।

और यहाँ किसी में रखी हैं जो जमाके रख गए हैं।

और कुछ सामान दिखाई दे रहे है साइड मे एक पोस्टर लगा हुआ है कुछ रद्दियाँ पड़ी हुई नीचे।

यहाँ पर वीवो के फोन रखे हुए हैं कई सारे यहाँ जियो फोन का पोस्टर लगा हुआ है नीचे और यहाँ पर कुछ मोबाइल सेट रखे हुए हैं।

और कई सारे मम कुछ म-मिठाई मावा रखा हुआ है।

यहाँ पर कई प्रकार की म मालाएं रखी गई हैं यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है यहाँ पर सफेद रंग की माला रखी पीले रंग की रखी हुई और एक और पीले रंग की रखी हुई है।